यहां पर लाइट भी लगी हुई है।

यह दृश्य एक दुकान का है जहां अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के फूल रखे हुए हैं।

यहां पर मिट्टी दिख रही है जिसका रंग भुरा है।

यहां पर करमचारी काम कर रहे हैं।

यहां पर कुछ दुकानें भी खुली हुई है।

दीवाल पर एक कांच भी लगा हुआ है।

और आसमान नीले रंग का है।

यहां पर एक ग्रे कलर का गेट भी है।

यहां पर पेड़ भी दिख रहे हैं जिनमें हरे रंग की पत्तियां लगी हुईं--

यहां पर नीले रंग का आसमान भी है और जमीन पे--

यहां पे फर्श ग्रे कलर का है।

यहां पे गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।